यहा पर एक पोस्टर दिख रहा है |पोस्टर का जो कलर है| | वो येल्लो कलर दिख रहा है |और इसमे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है कुछ पिंक और कुछ ब्लू कलर मे और आस पास मे काफी सारी लकड़िया दिख रही है | इसमे कुछ यूस हुआ दिख रहा है।

नीचे मे कुछ पेंटिंग वगेरह किया हुआ दिख रहा है | कुछ क्रीम कलर का पेंटिंग किया हुआ दिख रहा है | इसमे काफी सारे अलमारी वगैरह दिख रहे है काफी सारे विंडोज वगेरह दिख रही है और जो एक बिल्डिंग जो है काफी ऊंचा तक फैला हुआ दिख रहा है काफी दूर तक --

बिल्डिंग दिख रहा है | काफी ऊंचा बिल्डिंग दिख रहा है इसमे पेंटिंग जो है कुछ येल्लो कलर मे किया हुआ दिख रहा है और उसमे आस पास मे कुछ सीढ़िया दिख रही है | नीचे मे और आस पास मे काफी सारे पेड़ भी दिख रहे है जो ग्रीन कलर मे दिख रहे है।

कुछ बाईक्स राखी हुई दिख रही है और सामने मे कुछ स्कूटी वगेरा भि दिख रही है पोस्टर लगे हुए दिख रहे है कुछ रेड और वाईट कलर के उसमे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है।

यहाँ पर काफी ऊँची ऊँची चट्टानें दिख रही है चट्टनो के ऊपर से पानी गिर रहा है कुछ और यहाँ पर कुछ सुखा पेड़ दिख रहा है एक और उसकी ढाले दिख रही है।

बैक ग्राउन्ड काफी अच्छा दिख रहा है और आस पास मे कुछ पैड वगेरा दिख रहे है आसमान जो ब्लू कलर मे काफी सुन्दर दिख रहा है और यहाँ पर जो कुछ लोग।